हमने हमें एक रोड दिखाई दे रहा है जिसमें एक छोटा सा तांगा और एक ऑटो भी खड़ा दिखाई दे रहा है। जहां पर किनारे की ओर गई सारी बास की--

लड़कियां इकट्ठा नीचे रखी गई है और आसपास कई सारी ट्रांसमिशन लाइन नहीं गई हुई है और एक बड़ा सा पोस्टर भी लगा हुआ है और आसपास कई सारे पौधे लगे हुए हैं ।

स्टैचू भी लगे हुए हैं साथ ही एक औरत गुब्बारे लेकर बेच रही है जिसमें लाल और सफेद कलर के गुब्बारे रखे हुए है आस पास कई सारी औरतें भी दिखाई दे रही है और पेड़ पौधे भी लगे है।